यहाँ पे झूले वगेरा भी है झूलने के लिए ।

पहना हुआ है और यहाँ पे बोहोत ज्यादा लाइटिंग लगी हुई है।

सजावट हुई है और यहाँ पे झालर वगेरा लगे हुए है फूल के |

यहाँ पे कारपेटर लगा ब्लू कलर --

पोस्टर का कलर रेड एंड ब्राउन कलर का है ।

एक पे मुकुट वगेरा लगी हुई --

खड़े हुए है बोहोत सारे लोगो के हाथ में सामान है ।

एक काफी घना जंगल है।